कुछ लिखा गया है ऊपर हम्म टाइल्स लगे हुए हैं कुछ अ आस-पास कुछ बहोत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं जिन की पत्तियों का रंग हरा है। बिजली के खम्बे हैं जिन की वायरिंग है। नीचे गमले --

बिल्डिंग बहुत लंबी है जिसमें गोल्डन ब्लैक और व्हीट कलर का उपयोग किया गया है जिसमें ब्लैक कलर की रेलिंग लगी हुई है। बहुत--

घर की ऊंचाई अधिक है कुछ नीचे बैनर लगे हुए हैं लाल कलर का झंडा टेड़ा लगा हुआ है मंदिर के बैनर पर उसका पता लिखा --

यह तस्वीर एक रोड पर खड़े ऑटो की ले गई है इसके बाजू में से एक आदमी जा रहा है इसने लाल कलर का टॉप लगा रकहा है ऑटो काले कलर की है और उस पर वेलकम का पोस्टर लगा हुआ है ऑटो में पीले कलर की --

आस-पास बहुत बड़े-बड़े पेड़ हैं ऊपर आसमान हैं जो की बादल आये हुए हैं आस-पास के पेड़ो का रंग उनकी पत्तियों का रंग हरा हैं हल्की सी दूबा हैं कुछ लकड़ियाँ डली हुई हैं।

ये तस्वीर किसी बिल्डिंग की ली गई है जिस पर उस बिल्डिंग के नाम का बैनर लगा हुआ है। आस-पास बहोत से शोपीस और एक बड़ा-सा नीम का पेड़ लगा हुआ--